ये जो एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसकी ऊपर की साइड और आजू-बाजू के साइड जो है सेम डिजाईन की है।

उसके सामने एक कुछ तो भी रखा गया है और बिच मे से जो है वो रास्ता जा रहा है जिसपर अभी तक कोई नही है।

इसके पीछे बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है और सामने भी एक बड़ा सा पेड़ है उसके पीछे एक शेड नज़र आ रहा है और बड़े-बड़े हरियाली-हरियाली नज़र आ रही है और ये जो गाड़ी है मैदान मे खड़ी है।

और ऊपर मे जो है आसमान जो है पूरी तरह से बादलो से ढका हुआ है।

एक छोटे-छोटे और बड़े-बड़े पेड़ है और बीच-बीच में जो है पानी नजर आ रहा है और यह पूरी तरह से हरियाली हरियाली नजर आ रही है।

जो है एक गेट है मतलब यहांपे शादी का माहौल है और गेट जो है वह पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है उसके साथ में जो है एक सीढ़ी रखी गए है। और --

नीचे की और एक टप लगा हुआ है और एक आदमी जो काम कर रहा है और नीचे की और बड़ी-बड़ी सीढ़ियां है और वहां पे दो बड़े-बड़े फ्लावर पॉट है जो कि उसपे फूल है।

एक आदमी है जो की बीच में बैठा हुआ है और दो आदमी है जे उनके तरफ देख रहे हैं और कुछ को है जो बुक्स की तरफ देख रहे है।

पुस्तक शॉप जो होता है बुक्स शॉप वह है और जिसके ऊपर जो है बड़ा सा बोर्ड लगा गया और जहां पर उसका नाम लिखा है।

और उसके नीचे जो है यह शॉप है जहां पर बहुत सारे बुक्स जो है वह रखे गए हैं और एक आदमी जो है वह बाहर की ओर खड़ा है और बुक्स को देख रहा है और बाहर की ओर जो है कुछ स्टेशनरी का सामान जो है वहां पर लगाया गया है।